एक बड़ा - सा पहाड़ है। पहाड़ के अंदर ही अंदर जाने का रास्ता है।

ये बड़ा सा मैदान है। कुछ फुले लगी है जिनका रंग वाइट है पिंक है कुछ पौधे है। घर रंग हरा है।

और बडा सा माकन है। जो अंदर जाने का एक रास्ता है। बहुत सारी सीढ़िया है। बगल में एक ग्राउंड है।

एक तबेला है तबेले में बहुत सारे भैंसे है जो कुछ बैठे है और कुछ खड़े है एक गाय है ऊपर टीने लगे है पीछे एक बड़ा सा घर है।